ब्लैक और येलो कलर की स्ट्राइक है। दो बॉक्सेस रखे हैं इसमें भी येलो ब्लैक कलर की स्ट्राइक है। साई साइड में एक कारपेट है।

साथ बैठा है व्हाइट कलर की शर्ट पहने है। बाहर दो लोग हैं जिन्होंने एक ने ग्रीन और एक ने ब्लू कलर की टी-शर्ट --

कुछ कैमरे के स्टैंड रखे है बैग रखे हैं। दीवार है व्हाइट कलर में ऐ_सी लगी हुई है। ऊपर की साइड में कुछ लाइट्स लगी है व्हाइट कलर की ऊपर की साइड ऑरेंज कलर की दीवार का कलर --

एक बुक स्टोर है। यहाँ बहोत अलग-अलग प्रकार की किताबें रखीं हैं। पेन के पैकेट रखे हैं सामने स्टेशनरी के ओनर बैठे हुए हैं। जिन्होंने ब्लैक कलर के जैकेट ।

ग्रीन्स और येलो कलर के बोहोत सारे बु --